यह पार्क बच्चे के घूमने वाला है। देखिए कैसे बच्चे उस पार्क पर खेल रहे है। एं लडकियाँ भी हैं लड़के भी हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है। अ पार्क इ सब पेड़ भी है बरगद भी दिख रहा है काफी खूबसूरत है।

पुल है। बहोत लंबा पुल है और इसके पास में एक पेड़ है और इधर जितना भी दिख रहा है सब पेड़े है हरा-भरा। स्थल पे दिख रहा है। बीच में पानी दिख रहा है। काफी अच्छा है। कोई आदमी आ रहा है बाइक से।

काफी सुंदर लग रहा है। एक दो लकड़ी खाना गया है। खा के खंभा के जैसे खड़ा किया गया है।